यह एक बहुत ही सुंदर रूम है जिसमें एक बेड बिछा हुआ है बेड के ऊपर व्हाईट कलर का पिलो एंड --

बेडशीट भी लगी हुई है रूम काफी सुंदर दिखाई दे रहा है।

ये एक योगा क्लासेस चल रही है साथ ही में एक्सरसाइज भी है ये फिटनेस स्टूडियो भी है।

ये ढाबे के बोर्ड पर रेड और व्हाइट कलर से लिखा हुआ है ताजा मछली दिमाग बढ़ाता है।

दूर तक सिर्फ तलाव ही तलाव दिखाई दे रहा है ऊपर नीला आसमान बहुत अच्छा लग रहा है।

ये एक बॉयज के कपड़ों की शॉप है जहां पर एक पुतला व्हाइट कपड़ों में खड़ा हुआ है।

बाहर एक मैदान जैसी जगह पड़ी हुई है।

ये एक दीवार है जिसके ऊपर काफी कलरफुल --

जिसमें मोर दिखाई दे रही है मोर काफी कलरफुल दिखाई दे रही है।

ऑरेंज कलर ग्रीन कलर और व्हाइट ब्लैक का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा दिखाई दे रहा है।

जिसके ऊपर छत डल रही है बहुत सारे--

बहुत सारे इसमें ग्रीन कलर के पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां से निकल रहे हैं दो बॉयज जो कि चलते हुए दिखाई दे रहे हैं पेड़ काफी हरे भरे हैं.

ये एक शादी का लॉन जैसा दिखाई दे रहा है।

जिसमें काफी तरह की लकड़ियां दिख रही हैं कुछ लकड़ियां काफी बड़ी दिखाई दे रही हैं।

मैदान के बैक साइड बहुत से घर भी दिखाई दे रहे हैं।

एक गाड़ी भी रोड पर बहुत दूर को खड़ी हुई है।

जिसमें कई तरह के फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं।